सामने की तरफ मुझे एक कैटरिंग नजर आ रही है जूस की जिसके यह साइड की तरफ मुझे एक और दुकान नजर आ रही है दूकान को शटर लगी नजर आ रही है एक और दुकान नजर आ रही है। जिसका अंदर का शट्टर खुला--

तो एक बाइक नजर आ रही है और इसी के साथ मुझे काफी हरी भरी घास नजर आ रही है मोसम के अंदर कूछ बादल नजर आ रहे है सफ़ेद सफ़ेद बादल नजर आ रहे है।

पत्थर का बना हुआ वो नजर आ रहा है सफेद कलर की नजर आ रही है मुझे--

सामने की तरफ मुझे कूछ ऑटो वगेरा नजर आ रहे है कूछ लोग चालते हुए नजर आरहे उसि तरफ कूछ कोकोनट के फेड नजर आ रहे है।